एंड येलो येलो कलर के लाइटिंग से--

और वॉल का कलर क्रीम कलर में है और रूम का कलर वाइट कलर में और बहोत सारे लाइट्स है यहाँ --

और वाइट कलर का शर्ट ब्लू कलर का जींस है और राइट साइड में ऑरेंज --

लेफ्ट साइड मे वॉल पे और यहां पे बहुत सारे सामान रखे हुए है इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप से--

दो साइड शॉप है लेफ्ट साइड भी राइट साइड और--

राइट साइड में एकदम चम-चमा रहा है।

पंप जैसा बोरिंग सा बना हुआ है व्हाइट कलर का।

बहोत सारे लंबे लंबे से कुछ कुछ रखे हुए हैं ब्लू ब्लू इसमें एंड --

बहोत सारे ग्रीन ग्रीन कलर के ट्रीस हैं।

घोड़े वाला बहुत सारा अह फोटो फ्रेम लगा है।

एक भैया बाइक पे बैठे हुए हैं ब्लू कलर की लाइन वाली टी शर्ट पहन के और ग्रे कलर का पेंट और एक और बाइक है जिसमें --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

देख रही हूं मैं एंड कलर कलर के ट्यूब्स और यहां पे बहुत सारे पानी का सोर्स है।

और बहुत सारे ट्रीस भी हैं इस इमेज में और आकाश है जो कि ग्रे स ब्लू कलर में दिख रहा है।